साइकिल की दुकान है ये बहुत बढ़िया है। छोटे-बड़े साइकिल मिल रहे हैं यहाँ पे । अच्छा रेंजर भी ले जा सकते हैं आके --

सभी लोग। उसपे बहुत अच्छा है। मजबूत भी बना हुआ है कोई।

खूबसूरत भी लग रहा है देखने में। अच्छा लग रहा है।

बहोत बढ़िया बनाया है अच्छा बना रहे हैं लकड़ी का।

डिजाइनिंग के साथ अपना काम कर रहा है। बढ़िया हैं।